बैटरी या फिर टू कॉपी करने वाला--

मशीन का यह एक दुकान दिखाई दे रहा हैं।

जहाँ पर ढेर सारी टू कॉपी करने वाली मशीन --

जहाँ पर मछली का ढेर सारा दुकान लगा हुआ--

काफी सारे दुकानदार और ग्राहक भी यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं हैं।

अपनी सेल्फी फोटो लेता हुआ दिखाई दे रहा हैं।

किसी विद्यालय या कॉलेज का--

यह एक गलियारा दिखाई दे रहा हैं।

और यह गलियारा जो है काफी लंबा गलियारा दिखाइ दे रहा है।

और इस गलियारे के दीवालों पर काफी सारे नोटिस बोर्ड लगे हुए हैं।

और महापुरुषों की ढेर सारी फोटो भी लगी हुई दिखाई दे रही हैं।

स्थान दिखाई दे रहा हैं और यह खेलने कूदने वाला स्थान जो हैं।

बिल्कुल टाइल्स और मार्बल से बना हुआ हैं ।

और बीच में एक पल्ला बनाया रहता हैं जिसको नेट से घिरा रहता हैं उसी तरह का यह द्रश्य दिखाई दे रहा हैं।

एक घर के अंदर बने हुए ऑफिस का द्रश्य दिखाई दे रहा हैं।

बिल्कुल फर्नीचर से बनी हुई यह दरवाजा हैं।

जहां पर हॉस्पिटल के अन्दर में बना हुआ एक बेड बना दिखाया गया है।

कपड़े वगैरह भी बिकते हुए इसमें दिखाई दे रहे हैं काफी मेगा मार्ट --

किसी धार्मिक जुलूस का यह एक द्रश्य दिखाई दे रहा हैं।

इस द्रश्य को देखते हुए दिखाई दे रहे हैं और फूल माला की कारीगरी --

जहाँ पर ज्वेलरी शॉप का ढेर सारा डिजाइन लगा हुआ--

यहाँ पर दिखाया जा रहा हैं कि गले का हार भी यहाँ पर बिकता हैं ।

और यह गले का हार बिल्कुल जो हैं स्टील का हैं।

जिसको पुतले में टांग कर सजाया गया हैं ।

एक बोर्ड टंगा हुआ है जिसके नीचे वह सुपरमार्केट दिखाई दे रहा है।

जो सड़क के एक बगल में स्थित हैं बाहर में एक व्यक्ति अपने हाथों में छाता लेकर जाता हुआ दिखाई दे रहा हैं ।

एक स्विमिंग पूल का द्रश्य दिखाई दे रहा हैं जिस स्विमिंग पूल के अंदर--

एक नदी का द्रश्य दिखाई दे रहा हैं ।

और यह नदी जो हैं काफी लंबी और चौड़ी नदी दिखाई दे रही हैं ।

इस नदी के ऊपर में एक बड़ा सा ब्रिज भी बना हुआ हैं जो इस कोने से उस कोने की ओर जाता हुआ दिखाई दे रहा हैं।

नदी को क्रॉस करने के लिए इस तरह के ब्रिज का निर्माण किया गया हैं।

कोयले का काफी बड़ा स्टोर हैं यहाँ पर--

और कोयले के ढेर को ट्रक पर लादने का कार्यक्रम यहाँ पर किया जा रहा हैं ।

तीन-चार मुर्गे और दिखाई दे रहे हैं काफी तगड़े यह मुर्गे दिखाई दे रहे हैं।

एक नदी और तालाब का दृश्य दिखाई दे रहा है जहाँ पर--

किसी होटल का यह एक कमरा दिखाई दे रहा है।

होटल के अंदर बने है यहां पर खूब बड़ा हाल बना हुआ है।

और हॉल में ढेर सारी चेयर लगे हुए है और यहां पर टेबल भी बने हुए हैं जहां पर--

कंप्यूटर सेट भी रखा हुआ दिखाई दे रहा हैकंप्यूटर सिस्टम के पीछे यह बोर्ड लगा हुआ है।

बगल में फेवीकोल भी लिखा हुआ है एक बोर्ड टंगा हुआ है दोनों दुकान एक ही मालिक का दिखाई दे रहा है।

बड़ा सा स्टोर रूम का दृश्य दिखाई दे रहा है।

प्लेट्स वगैरह रखे हुए दिखाई दे रहे हैं।

ऐसा लग रहा है कि ये किसी इलेक्ट्रॉनिक सामान का स्टोर रूम बना हुआ है जहाँ पर पंखे का--

जो काफी सुंदर तरह का यह दुकान दिखाई दे रहा है।

होटल के अंदर में लोगों को बैठकर खाने के लिए--

दो घर बना हुआ दिखाई दे रहा है ।

किसी गवर्नमेंट का ऑफिस बना हुआ दिखाई दे रहा है।

एक बगीचे का दृश्य दिखाई दे रहा है।

दुकान के भीतर में ढेर सारा सामान बिकता हुआ दिखाई दे रहा है।

और काउंटर के सामने दो चेयर लगे हुए हैं।

स्टैचू बने हुए दिखाई दे रहे हैं।

रेलवे स्टेशन पर रेलवे लाइन पर कोई भी गाड़ी अभी नहीं आई हुई है।